प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे --

जहां पर बच्चों के खेलने के लिए खिलौने बाहर एक लोहे की तार में टंगे हुए दिखाई दे रहे है जिसमें बॉल बल्ले और खिलौने है।

यहाँ स्टेशन पर एक पानी की टोटी दिखाई दे रही --

इस दृश्य के अंदर एक छोले वाला दिखाई दे रहा है जिसके पराती के अंदर छोले रखे हुए है।